आप देख सकते है यहाँ पे टाकीज है चेयर है लोग खड़े है बहुत सारे बैठे है और तीन बल्ब है बहुत सरे बड़ा सा टाकीज है।

देख सकते हैं बहुत अच्छा सजाये हैं पंखा--

देख सकते हैं यहाँ पस बजा वगरह है।

छो काफी सुंदर है छोटा पेड़ है।